गेट के ऊपर एक पेनल लगा हुआ है छोटा सा राइट साइड देखेंगे तो एक पैड लगा हुआ है ऊपर एक टंकी बनी है और काफी अच्छा ऊपर आसमान दिख रहा है।

और सामने काफी सारे पैड निकले हुए है और झूले लगे राइट साइड ऊपर पूरा आसमान दिख रहा है।

सीढ़ियां बनी हुई है और सामने एक ब्रिज बना हुआ है और यहां पानी भरा हुआ है।

और ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं और एक ए.सी लगा हुआ है काफी सारे--

ये एक नदी है जहा पे दिख रहा हैकाफी ज्यादा पानी बेह रहा है और यहा पे पहाड़ सामने दिख रहे है तीन चार लेफ्ट में देखेंगे तो कुछ लोग खड़े हुए है और पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुएँ है।

बहुत सारी नाव खड़ी हुई है यहां पर और उस नाओ में कोई नहीं बैठा है राइट साइड देखेंगे तो एक जाली लगी हुई है।